इस तस्वीर में हमे तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो घर कि मरामत कर रहे हैं। घर मे एक बड़ा गेट है। जिसकी जिसमे बरसोई लगी हुई है जिस बरसोई का कलर कत्थई है।

और सड़क के चा चारों स तरफ कुछ कुछ क छोटे छोटे से पेड़ उग रहे हैं।

जाली काले कलर की है और साइड में एक कार खड़ी हुई है।

कुछ लड़कों ने बैग टांगे है। जिनका कलर फिरोजी और काला है। कुछ लड़के जो खड़े हुए हैं एक ने लाल और लाल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

सीढियां बनी हुई है जो बहोत ही आकर्षित और मनमोहक दिखाई दे रही हैं। बहोत सारे छोटे-छोटे से कुण्डियों में पेड़ लगे हुये हैं और आस पास भी छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारी दुकान दिखाई दे रही हैं जिन पर लाइट लगी हुई हैं और कुछ लकड़ी और पत्तों के --

डेकोरैशन किया गया है। नीचे फूल रखे हुए हैं। जिनका कलर पीला ऑरेंज है। बहोत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो कुछ फूल एँ खरीद रहे हैं और कुछ फूल --

कुछ मछलिओं का आकार काले कलर की हैं। कुछ मछलीयाँ सफेद कलर की हैं जो बहोत ही सुंदर --

सामने हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर दो खंबे लगे हुए हैं जिसमें एक गेट बना हुआ है। गेट के बाहर दो बाइक खड़ी हुई हैं। एक ऊपर और एक नीचे खड़ी हुई है। बाइक का कलर काला है।

का कलर सफेद और फिरोजी कुछ खंबे लगे हुए हैं जिनका कलर लाल है। बच्चे स्लाइडर पे और खेल के झूले पे अपना-अपना खेल खे --

और कुछ लेगी ओर कुछ झावले दिखाई दे रहे हैं। नीचे मे एक ग्रीन कलर का नेट लगा है। कुछ खोके दिखाई दे रहे हैं और सारे कपड़े एक हैंगअर पे टंगे हुए हैं।

स्कूटी खड़ी हुई है। सामने दो व्यक्ति खड़े हुये हैं। एक ने फिरोजी कलर की एक ने क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई है। एक शटर लगा है। शटर का कलर क्रीम है।